इसमें काउंटर पे बहुत सारे सामान रखे गए हैं।

यहां पे ईंट का काम चल रहा है सीमेंट और ईट--

घर है रेड कलर का दीवार पेंट किया गया है ऊपर छत भी है।

साइड में सफेद कलर का पेंटिंग है दीवाल का--

ये वैन डेंटल केयर का बोर्ड लगा हुआ है।

शटर खुला हुआ है नीचे डेंटल दांत।

यह बेड है बेड पे सफेद चादर बिछा हुआ है कंबल रखा है।

धुलाई हो रही है ऊपर टंगी हुई है कार नीचे सब सामान वगैरह बिखरा हुआ है।

काफी सुंदर फील्ड है घास लगा हुआ है।

फोरव्हीलर है और लोहे का बाउंड्री लगा हुआ है।

काफी सारा स्पेस है मिट्टी काटा गया है यहां पे--

लिखा गया है अरुण डिजिटल अरुण डिजिटल एक्स रे लैब ।

रहे हैं पिंक कलर का ड्रेस पहने हुए हैं शूज पहने हुए हैं।

ये फल है काला अंगूर है इसको खाया जाता है।

काफल का डिजाइन एक तरफ से बड़ा है एक तरफ--

और काफी पेड़ पौधे हैं लोग भी देख रहे हैं ट्रांसफार्मर है पूल है।

और घर के बाहर भी इधर एक आदमी है उधर भी एक आदमी है।

हथौड़ी हममड़ भी दिख रहे हैं पाइप भी है पीछे उसके बाल्टी है।

और सीमेंटेड बाल्टी है काफी सारा सामान है।

यह घर का गेट है बाउंड्री है खमिया लगा हुआ है सा--

गेट पे भी बोर्ड लगा हुआ है महर्षि वाल--

और एक पानी का बोतल है ब्लैक कलर का चेयर है।

नीचे पीले कलर का मैट बिछाया गया है।